एक कोई सी पत्थर की मूर्ति बनी हुई दिखाई दे रही है उसके नीचे एक सफ़ेद कागज लगा हुआ चिपका हुआ--

एक दिल के आकार गेट बना हुआ है जो की पूरा रंग बे रंगी फूलो से सजाया हुआ है।

इस तस्वीर मे आसमान दिखाई दे रहा है काला लाइटे दिखाई दे रहे है।

चारों तरफ पंखे लटके हुए है कुछ लोग दिखाई दे रहे है काम करते हुए।

पंखा दिखाई दे रहा है टंगा हुआ और कुछ और भी सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है और कुछ यंत्र दिखाई दे रहा --

लाइटे ही लाइटे ही लटक रही है बहुत सारि और सफ़ेद झालरे ही लटकी हुयी है और परदे लटके हुए है।

अंग्रेजी मे गोवा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।